और हरियाली बहुत सारी नजर आ रही है और यहां पे एक खंभा भी है जिस पे बहोत सारी इधर से उधर तार भी गए हुए हैं।

यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है जिसकी शकल नहीं दिखाई दे रही है।

व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है ब्लू कलर की पैंट पहन रखी हैं चप्पल भी है और यहां पे बहुत सारा मतलब --

डबु भी है जिसका दिल बना रखा है इन्होंने और ऊपर ए_सी भी लगी हुई नज़र आ रही है बेड भी नज़र आ रहा है यहां पर।

मकान बहुत बड़ा बना हुआ है और यहां पे भी लटके हुए नजर आ रहे हैं एक दो व्यक्ति उधर भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे है कुछ इधर आ रहे है कुछ भी उधर जा रहे है ऊपर एक टेनो से बना हुआ ए --

मकान सा बना हुआ नजर आ रहा है स्टूलें भी पड़ी हुई है बैठने के लिए और आसपास मकान भी नजर आ रहे हैं।

और यहां पे गाड़ियां भी खड़ी हुई दो नजर आ रही है और यहां पे बैंक भी है और यहां पे तार वगैरा भी नजर आ रहे है।

और यहां पे बहुत अच्छी डिजाइनिंग से बना हुआ है गणेश जी की मूर्तियां लगी हुई है बालाजी की भी फोटो वगैरह लगी हुई है।

मस्ती चाहिए यहां साहित्य के और यहां पे दो व्यक्ति छाते भी ले रखी है और यहां पे लंबी बहोत ही बनी हुई है।

और यहां पे बहोत सारे व्यक्ति है जो बैठे हुए नमाज पढ़ रहे है पता नही क्या कर रहे है बट बहोत सारे व्यक्ति है यहा।

यहां पर एक पारक है काफी खूबसूरत है चारों तरफ जोड़ दोनों तरफ रोड गई है ब्लॉक लगे हुए एक व्यक्ति खड़े हैं।

पेड़ पौधे लगी हुई है और काफी आडू वगैरा भी यहां पे लगे हुए नजर आ रहे और काफी देखने में खूबसूरत लग रहा है।

और सीढी सी भी लगी हुई नजर आ रही है डब्बू भी टंगे हुए नजर आ रहे है सामान भी काफी पड़ा हुआ इसमें नजर आ रहा है।

और पीछे बिल्डिंग भी नज़र आ रही है बहुत सारे व्यक्ति भी खडे हुए नज़र आ रहे है कुछ इधर जा रहे है कुछ उधर जा रहे है।

पास में सिर पे एक टोपी लगाने वाली टोपियां भी पड़ी है और कपड़े भी पड़ी है उधर सामान और भी पड़ा है एक व्यक्ति भी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

बिल्डिंग सी बनी हुई है जिसपे बहोत सारे मतलब फन्के वगैरा भी लाइटें भी लगी हुई है पंखे भी है।

यहां पर दो तीन व्यक्ति है जो एक बैठा है एक खड़ा हुआ नजर आ रहा है जिनकी शक्ल दोनों की नहीं दिखाई दे रही है।

करीम से पड़ी हुई है साबुन जैसे नजर आ रहे और इधर एक घरों सी भी बैठी है बैंक डाले हुए जिनके शक्ल नहीं दिखाई दे रही ऊपर पंखा भी लगा हुआ है।

आर्केस्ट्रा जैसा सनाव नजर आ रहा है और यहां पे चार है डांसर है दो लेडिस दो ये जिनके शक्ल नहीं नजर आ रही है धारा भी लगा हुआ है अलग अलग डिजाइन के।

एक पुल भी बना हुआ है टेनों से और बैठने की मेजा वगैरा भी लगी हुई है और आगे दो दुकान भी है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

बहोत सारे स्टूलें भी पड़ी हुई नजर आ रहे हैं जिनमें बच्चे बैठे हैं और स्टडी कर रहे हैं।

यहां पे बहोत सारी लकड़ी की बनी हुई स्टुले रखी हुई है होटल है है जिसमें काउंटर भी लगा हुआ जिसपे सामान भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है।